यह बहुत बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है।

इसमें अलग अलग खानो में समान रखा हुआ हैं।

एक ट्राली भी यहां खड़ी है।

और बहोत सारे गमले भी नजर आ रहे हैं।

यहां बहोत अच्छा पारक दिखाइ--

और बहोत साफ सफाई है।

और यहां पेड़ गमले भी लगे हुए हैं।

मैट भी चस रही है पंखे भी लगे हुए हैं।

पत्थर की कुर्सी भीं रखीं हुई हैं।

यहां बहुत सारा सामान रखा है।

यहां बहोत सारे आदमी भी खड़े हैं।

और दूल्हा दुल्हन सजे खड़े हैं।

और एक लड़का भी खड़ा दिखाई दे रहा है।

बहुत सारी भीड़ लगी हुई है।

ये है बहुत सुंदर मिस्त्री की दुकान दिखाई दिख रही है।